कुछ लाइट भी है तथा इसमें ए_सी भी लगाई गई है।

यह एक ऑफिस का दृश्य है जहां पे बूढ़े जवान एवं कुछ बुढ़िया भी नजर आ रहीहै।

व्हाइट कलर का गोदरेज भी बनाया गया है जिसपे बहुत सारे सिंगर रखे गए हैं।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो मोबाइल चलाता हुआ दिख रहा है जिसका चेहरा ब्लर किया गया है।

बिल्डिंग व्हाईट कलर का पेंट किया गया हैं और इस हॉस्पिटल में भी व्हाईट कलर का पेंट किया गया हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रही है कुछ पेड़ सूखे हुए हैं कुछ हरियालियों से भरी हुई है।

एक महिला भी नजर आ रही है जो कंप्यूटर चलती हुई दिख रही है।

कुछ मट्टी के पहाड़ जैसे कुछ नजारे भी नजर आ रही है।

कुछ तार भी नज़र आ रही है कुछ कुर्सियां भी दिख रही हैं।

गेट पर पर्दे भी लगाया गया है जो ग्रीन कलर के बनाए गए है।

इसमें बहुत सारी गाड़ियां भी लगाए गए हैं और उसके आसपास में कुछ लोग भी हैं।

फूलों और बेलूनो का सजावट किए गए हैं।

एक बिल्डिंग भी दिख रही हैं जो रेड कलर का पेंट किया गया है।

खिड़कियां खुलीं हुई है एवं इसके ऊपर में भी कुछ दुकानें नजर आ रहीं है।

गोदरेज भी बनाए गए हैं जिन पे कंप्यूटर रखी हुई है।